जो वाइट ड्रेस है और एक ब्लू ड्रेस में का टी-शर्ट पेहना हुआ है।

और यहाँ टेबल और ये कुछ लोग बैठे हुए हैं।

कपड़े जो रखा गया है और दुकान में जो लाइटिंग जो है वो काफी पर्याप्त मात्रा मे लाइटिंग की हुई है। यहाँ पर एक फैन भी नजर आ रहा है जो ऊपर में सीलिंग फैन है।

हेलो गाइस ये किसी उम्म मार्केट का तस्वीर है। किसी शहर का हैं और यहाँ पर बिलकुल हरा-भरा पेड़ नजर आ रहा है और वहाँ पर एक --

ये किसी स्कूल की तस्वीर है और यहाँ पे --

सबको अगल-अगल सीक्वेंस पे लीनिंग बाइ रखा गया है।

विथड्रो करने के लिए शायद के वो लाइन पे खड़ा है बिलकुल कतार में खड़ा है।

वो लोग बिचार कर रहे हैं।

वगेरा वाला भी बैठा हुआ है जो मल्टीकलर में दिख रहा है।